गार्डन जिसमे टावर लगा हुआ है बगल से छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए है जमीन पर सिलेटी कलर की जमीन है जिसमे घास उग रहा है और बगल में झूले लगे हुए है एक खम्बा लगा हुआ है।

हरे कलर पेड़ लगे हुए है नीचे घास लगा हुआ है घास में बहुत सारी गंदगी डली हुई है एक लटू है उधर की और से दल रहा है।

इसमे बहुत सारे बीच मे पत्ते डले हुए है बगल में एक लाइन से पेड़ लगे हुए सामने टन्की लगी हुई है और बगल मे पेड़ लगे हुए है मिट्टी भी डली हुई है घास भी लगाया हल्का-हल्का कुछ जगह पर।